यहां एक सफेद रंग का कूलर भी रखा हुआ है जो आकार में काफी छोटा है।

इस पर लिखा है हिमालया प्रोपर्टी डेवलोपर्स ये बहोत ही सुन्दर और बड़ा बोर्ड है।

और कुछ फूलो के पौधे भी है।

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

यहां रिसेप्शन का काउंटर दिख रहा है।

ये तस्वीर एक शॉप की है।

ये तस्वीर बहोत बड़ी मशीन की है।

कई कंप्यूटर भी रखे हुए हैं।

और एक आदमी भी यहां बैठा हुआ है।

और इसमें सफेद रंग का और काले रंग का --

एक बड़ा टेबल बीच में रखा गया है।